यह एक जिम की तस्वीर है जिसमे व्ययायाम के उपकरण रखे हुए हैं।

बीच में एक एक्सटेंशन मशीन रखी हुईं हैं।

फर्श पर काले रंग के रबर मैट बिछे हुए हैं।

पीछे की दीवार पर बड़े शीशे लगे हुए हैं।

यह तस्वीर एक सरकारी भवन की है जिसमें लोग कतार में खड़े दिखाई दे रहे हैं।

कुछ लोग दरवाजे के पास खड़े होकर आपस में बात कर रहे हैं पेड़ो की छाया भवन के सामने आंगन में पड़ रही है।

एक लड़का बाल कटवा रहा है।

तीन बच्चे सेना की वर्दी पहने हुए हैं।

एक बच्ची गुलाबी ड्रेस और पंख लगाए हुए हैं।

सड़क के किनारे एक पेड़ लगे हुए है।

यह स्थान किसी हाउसिंग सोसायटी का प्रवेश द्वार है।

टेबल के चारों ओर कई कई काली कुर्सियां लगी हुई है।

दीवार पर एक बड़ा वाइट बोर्ड है जिस पर कुछ लिखा हुआ है कोने में एक कांच वाली अलमारी रखी हुई है।

सड़क पर काले लैंप पोस्ट लगे हैं।

लोग लाइन में खड़े हुए हैं।

यह एक तीन मंज़िला इमारत है।

सामने सड़क पर बाइक खड़ी है।

उसने ग्रे शर्ट और नीली जींस पहनी है।

तस्वीर में फलों की दुकान है।

सामने ढेर सारे संतरे रखे हुए हैं।

यह सड़क किनारे का दृश्य है।

कुछ लोग पुल के पास खड़े हैं।

पास में मोटरसाइकिल और ऑटो खड़े हैं।

काउंटर पर कैंची और रजिस्टर रखा हुआ है।

यह तस्वीर एक प्राचीन मंदिर के प्रवेश द्वार की है द्वार के ऊपर --

मंदिर की दीवारें पुरानी दिखाई दे रही है।

कुछ लोग मंदिर के अंदर प्रवेश करते हुए नजर आ रहे हैं।

यह लोहे के पूर्जो का ढेर है।

पुर्जे जमीन पर फैले हुए हैं।

कुछ लंबी छड़ जैसी आकृति के है।

दिवालों पर गोल हरे सफेद रंग की डिजाइने बनी हैं।

दोनों ओर रंगीन टाइल वाले खंबे हैं।

पास में पेरो की शाखाएं हैं।

यह एक चर्च का दृश्य है।

एक व्यक्ति मूर्तियां सजा रहा है।

मंच पर तीन लोग बैठे हुए हैं।

बैनर पर कार्यक्रम की जानकारी दी गई है।

दो लोग मंच पर खड़े हैं।

सामने फूलों की सजावट है जमीन पर चप्पल रखी हुई है।

एक व्यक्ति मंच पर खड़ा हैं।

लोग नीचे खड़े होकर देख रहे हैं।

वह पानी के किनारे लेटा हुआ है।

पास में हरी घास उगी है।

इस तस्वीर में एक कार का बोनट खुला हुआ है।

अंदर इंजन दिखाई दे रहा है।

उसके पास एक कपड़ा रखा हुआ है।

यह एक फ्रीजर का दृश्य है।

अन्दर दो सजाए हुए केक रखे हैं।

यह एक आधार नामांकन केंद्र है।

एक व्यक्ति काउंटर पर खड़ा हुआ है।

कुर्सियां एक तरफ रखी हुई हैं।

आस पास हरी घास और पौधे लगे है पीछे पेड़ दिखाई दे रहे है।

यह एक खिलौने की दुकान है।

कांच की अलमारीयो में मॉडल रखे हैं।

कुछ बॉक्स ऊपर सजाए गए हैं फर्श लकड़ी का है।

यहां कई ए_पी_आर_टी_एस_सी बसे खड़े हैं।

यात्री बस का इंतजार कर रहे हैं।

शिक्षक बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं।

सभी अपनी कॉपीयों में लिख रहें हैं।

बीच का हिस्सा लाल रंग से रंगा हुआ है।

सफेद बॉर्डर वाली खिड़कियां लगी हुई है।

यह एक जिम का दृश्य है।

एक व्यक्ति लेग प्रेस मशीन पर वयायाम कर रहा है।

इसमें ग्रे टी शर्ट और काली पैंट पहने हैं।

मशीन में गुलाबी और हरे वेट लगे हैं।

यह एक झील का दृश्य है।

यह तस्वीर एक जिम की है।

वह लाल रंग की बिना बाजू की हुड्डी और नीली जींस पहने हुए है।

दुकान में रंग बिरंगी राखियां टंगी है।

कुछ राखियों में सुनहरी सजावट है।

कुछ लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं।

यह तस्वीर एक जे_सी_बी मशीन की है।

मशीन के पास तीन लोग खड़े होकर काम को देख रहे हैं।

गढ्ढा ताजा खोदा गया है और उसकी मिट्टी चारों तरफ बिखरी हुई है।

दूर एक व्यक्ति जमीन पर बैठा नजर आ रहा है।

पास में तीन ऑक्सीजन सिलेंडर है।

चावल के पैकेट बहोत सारे रखे हुए हैं।

बीच में देवी दुर्गा की प्रतिमा है।

चारों ओर तिरंगे गुब्बारे सजाए गए हैं।

यह एक लाइब्रेरी या स्टडी हॉल है।

यह तस्वीर मे स्विमिंग पूल है।

पानी मे बच्चे खेल रहे है।

रंग बिरंगी स्लाइड्स लगी हुई है।

यह योग कक्षा का दृश्य है।

वे खिंचाव वाला आसन कर रहे है।

यह एक स्कूल की इमारत है।

दीवारों पर वैज्ञानिकों और नेताओं की तस्वीरें हैं।

बैगनी रंग के खंभे भी है।

दो टायर जमीन पर रखे हैं।

चर्च पर गुलाबी और पीली लाइटे है।

यह एक गांव का दृश्य है।

सामने सूखी घास और झाड़ियां हैं।

पीछे कुछ घर और पेड़ हैं।

मंदिर में अलग अलग आकार के शिखर है।

इस तस्वीर में पुरानी ईटो से बनी इमारत है।

पाहि और पौधे उगे हुए है।

पुरुष पीले वस्त्र और महिलाएं गुलाबी वस्त्र पेहने हैं।

सभी जमीन पर बैठकर पूजा कर रहे है।

सामने भगवान की सजाई प्रतिमा है।

यह एक घाट का दृश्य है।

लोग सीढ़ियां पर चल रहे हैं।

इस तस्वीर में मार्शल आर्ट्स की क्लास चल रही है।

सभी छात्र व्हाइट ड्रेस और बेल्ट पेहने हैं।

कमरे की दीवारों पर मार्शल आर्ट्स की तस्वीर लगी है।

सामने मार्शल आर्ट बॉडी फिटनेस एकैडमी का बोर्ड लगा है।

दूर पानी में लाइट हाउस दिख रहा है।